साफ सुथरा और खाली बिल्कुल खाली है।

नए दुकान का उद्घाटन होड़ा है जो एक सैलून का दुकान है।

और यह एक कर्म का मरा है जिसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है और--

लड़का के रुम में रखा हुआ है।

यह बहुत हि स्वच्छ साफ सुथरा वात शांत वातावरण हैं।

यहां पे एक ऑफिस दिख रहा है।

और एक लड़का जा रहा है ऑफिस में निबंधन एवं परामर्श केंद्र में बात करने के लिए।

यहां पे गुलाब चंपा रो--

औड़ गाड़ियों की पार्ट्स बेची जातीं हैं।

औड़ शादियां होने वाली है औड़ जयमाला का स्टेज जो बहोत ही साफ सुथरा--

यहां पे लाइट की भी व्यवस्था की गई है पूर्णतः--

थोक कर में रखने बेचने के लिए रखा गया है और कपड़े बहोत ही सुंदर साफ --